पाहाड़ है बहुत सारे पेड़ भी हैं कुछ कारें हैं।

बीच मे कुछ कुछ स्टैग करके टेबल्स रखी गई हैं।

लेफ्ट साइड में क्लास रूम का गेट है बीच में एक पोस्टर लगा पड़ा है और राइट साइड की दीवाल पे जेरॉक्स लेमिनेशन लिखा हुआ है।

भीड़ में से एक आदमी ने मशाल जला रखी है फिर एक बहुत बड़ी सी एल_इ_डी लाइट्स की फ्रेम जल रही है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल एल_इ_डी लाइट्स है जिसकी वजह से बहुत सुंदर लग रहा--

रेड कलर का बाउंड्री उसपे पेंट किया गया है स्ट्रक्चर दिया गया है बहुत सारे पेड़ भी हैं ग्राउंड के आसपास फिर एक लाइट भी दिख रही है और दो ट्रैक्स बनाए हुए हैं रनिंग के।

एक रेड कलर का रिक्शा है उसके सामने एक आदमी है जो की खैनी बना रहा है।

राइट साइड में व्हाइट कलर की बहोत बड़ी सी बिल्डिंग है जो कि थोड़ा सा ब्लू ब्लू भी शेड है उसमें।

अंजू के सामने एक पोल भी है जो की बहुत बड़ा है।

बंबू से बना हुआ एक रूम है जो कि पूरा पता चल रहा है कि लकड़ी से बना हुआ है उसमें एक वाइट कलर का व्हाइट बोर्ड लगा पड़ा है और व्हाइट बोर्ड के सामने बहुत सारे चेयर्स लगी पड़ी हैं और इन चेयर्स में स्टडी टेबल भी अटैचड है।

ग्रीन कलर का होटल का रूम का अंदर का है जिसमें मुझे तीन टेबल दिख रही है।

आदमी ने एक वॉच पहन रखी है ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी है ब्लू कलर का पैंट पहन रखा है।

और पत्थर से बहोत सारा पानी गिर रहा --

दुकान बार्बर की लग रही है और बहोत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है इसमें पेन है बलूंस है रेड और वाइट कलर के।

दो लोग है जो सेल्फी ले रहे और उस सेल्फी में पीछे और भी बहोत सारे लोग आ रहे जो कि ध्यान नहीं दे रहे--

यह जे_सी_बी मशीन से अटैचड है और कुछ वहां पे काम चल रहा है।